ऊपर बहुत और काउंटर पढ़ा हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

ऊपर पंखे लटके हुए हैं और इसमें सफेद कलर हो रहा है।

और यहां कुर्सियां भी रखी हुई है और एक मेज रखी हुई है।

जिसके सामने पर लाल कलर के पर्दे लगे हुए हैं और एक घड़ी लगी हुई है।

इसके बाहर रोड चल रहा है और कारें चल रही है।